कत्थई कलर का एंड अ-वाई अ-येल्लो कलर का एंड ग्रीन कलर के यहाँ पे पेड़ लगे हुए है एंड यहाँ पे कार खड़ी हहै ।

यह एक मंदिर है जहाँ पे एक गेट लगाया और यहाँ सामने रोड है और यहाँ पे ट्रीस है।

यहां पर सोने की भी मूर्ति रखी है और यहां पर दो थल रखी है तांबे की और यहां पर गुंडी रखी है और यहां पर एक लोटा रखा हैं।

ट्रीज लगे है बड़े और ये ग्रे कलर की इटे है जिसको बहुत अच्छे से सजाया है और यहाँ पे जाने का रस्ता भी अंदर गुफा मे--

की पिक्चर है और यहाँ पे तीन स्टेचू है और यहाँ पे एक क शे दो शेरवानी है जो एक ब्राउन एंड क्रीम कलर की है और यहाँ पे एक ब्लू एंड गोल्डन एंड क्रीम कलर की है।

क्लाससेस है जहा पे डांस हो रहा है कई बच्चे मिरर मे डांस कर रहे है और जिन्होंने व्हाइट कलर एण्ड ब्लैक कलर के कपड़े पहने है जिन्होंने लोअर टीशर्ट एण्ड टीशर्ट पहने है और कई लड़किया भी है ।

यहां पे जमीन है एंड यहां पे बहुत सारे बच्चे ड्रा कर रहे हैंजिन्होंने अपनी अपनी ड्रेस एंड कपड़े--

यहां पे योगा क्लासेस हो रही है यहां पर पर्दे भी लगे और टाइल्स भी लगी है और फैन लगी है ढेर सारे।

एण्ड यहां एक अंकल खड़े है जिन्होंने कपड़े पहने हुए है ब्लू कलर के और उन्होंने हाथ में कुछ पहना हुआ है ।

हॉस्पिटल है जहां पे दो डॉक्टर बैठे हुए हैं वह किसी की जांच मतलब कंप्यूटर में देख रहा --

ये स्कूल की पिक यहाँ पे विंडो भी दिख रहे है एंड यहाँ पे बच्चो ने अपने अपने ड्रेसेस पहने है कईयों ने कपडे पहने--

यहां पर तो स्कूटी खड़ी है एंड दो बाइक एंड पीछे कार है एंड यहां पर बाकी दुकान और है इंडिया बिल्डिंग--

कळरफुल अ घर हैँ यहा पे क़त्थाई एण्ड वाइट एण्ड अ ब्राउन कलर का घर हैँ ।

इनबाइर से चला रहे है और उन्होंने शर्ट एण्ड जींस पहना हुआ है और वहा पे कांच के मिरार भी रखे हुए है ।